और एक ट्रांसफार भी है और एक बिजली का खम्भा भी है। उधर एक आदमी भी दिखाई दे रहा है। उधर कुछ पेड़ भी है।

इसमें कुछ पत्थर सा भी लगा है। दो लाइट भी जल रही है और कुछ कार्टून सा भी धरा हुआ है।

इधर कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं। जैसे इधर उधर जैसे जंगलाइत जैसा लग रहा है व पानी भी भरा हुआ है।

कुछ यहाँ दो लड़की हैं । यहाँ लड़की सी जैसी टाइप में सरिया हैं ।

यहां देखिए यहाँ एक जिम करते हुए बंदे नजर आ रहे हैं और --

यहाँ देखिए एक व्यक्ति है जो नार्मल द्वारा सेल्फी ले रहा है अपनी और वो ग्लासेस में भी नजर आ रहा है |